दीवारों पे ब्लू कलर का पेंट भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक मैदान में बच्चों के झूले लगे हुए हैं।

एक डस्टबिन का डब्बा और एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

फूलों का और कपड़ों का डेकोरेशन भी अलग-अलग कलर का दिख रहा --

इसमें सड़क पर एक बस और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

बाहर एक काले कलर का गेट भी खुला हुआ है।

इसमें एक बड़ी नीले कलर कि कार खड़ी हुई है।

दीवार पे छोटे छोटे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

कुछ बक्से भी छोटे छोटे फर्श पे रखे हुए हैं।

लड़की ने लाल कलर का लहंगा पहन रखा है।

कुछ लोग सफेद कलर के कपड़ों में हाथ में किताब लिए हुए --

मैदान में छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

इसमें एक पानी की बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

इसमें एक पतंजलि की दुकान दिखाई दे रही है।

मे एक स्टेज फंक्शन होता हुआ दिख रहा है।

अंदर छत पे काफी सारी लाइटे भी जली हुई हैं।

छत पे काफी सारी व्हाइट कलर की लाइटें भी लगी हुईं हैं।

मंदिर के बाहर काले कलर का गेट भी लगा हुआ है।

इसमें एक दीवार पर लकड़ी का डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

मैदान में एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

बाहर औरतें और आदमी भी खड़े हुए हैं।

बाहर सड़क पे ऑटो और एक्टिवा भी चलता हुआ दिख रहा है।

इसमें एक बड़ासा हॉल में कुछ मशीने रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

इसकी छत पे गुब्बारे और लाइटें भी लगी हुई है।

हॉस्पिटल की बड़ी मशीन भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

छत पे ऑपरेशन लाइट और बड़ी सी ट्यूबलाइट भी लगी हुई है।

जिसमें खाने पीने का सामान और भी बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई --

पीले और नीले कलर की बिल्डिंगों पे पट्टियां भी बनी हुई दिख रही हैं।